बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं ग्रीन कलर के। पीछे योगा का बोर्ड भी लगा है उसके पीछे बिजली के तार भी हैं।